पर शिव शंकर की एक तस्वीर लगी हुई--

इस जंगल के रास्ते में बीच में एक पूल बना हुआ है।

इस गाड़ी पर लाल रिबन लगी हुई है तथा यह--

तस्वीर है जहां पर दो डॉक्टरों द्वारा--

है जिन पर माला चढ़ाई हुई--

आदमी ने ग्रीन कलर ।

एक बड़ा टेबल है जो--

यह गिलासों की ढेर है।

यहां एक बैंक की तस्वीर--

है। जहां तरह-तरहा की मालाएं रखी गई--

यहां किसी बरामदे की तस्वीर है इस बरामदे में श्वे--

यह सड़क से ली गई एक तस्वीर--

प्रैक्टिस के लिए आते हैं बहुत यहां गर्ल --